सामने एक जंगल है जिसमें बहोत सारे हरे रंग के पेड़ पौधे लगे हैं और--

और एक गाड़ी खड़ी है जिसका रंग--

सामने एक मकान है जिसका रंग नीला और भूरे रंग का है।

सामने बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जिसका रंग हरा है।

काले कलर का है और एक व्यक्ति ने पीले रंग की--

सामने एक कमरा है जिसका रंग सफेद रंग का है।

सामने एक कमरा हैं जिसमें--

काला और लाल आदि रंग से रंगा गया है और--

में से एक ने काले रंग के कपड़े पहने हुए हैं।

सामने एक कमरा है जिसका रंग--

कांच और लकड़ी लगे हैं जिनका रंग--

और कुछ पेड़ पौधे हैं जो कि हरे रंग के है।

और कुछ लोग हैं जिनमें से एक काले रंग के कपड़े पहने हुए है।

पीले रंग के कपड़े पहने हुए हैं।

सामने कुछ खंभे है जिनका रंग सफेद रंग के है और कुछ लोग --

जिन्होंने भूरे और सफेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं।

ओर एक बड़ा दरवाजा लगाए गए हैं।